फूल वगैरा हैं बादल हैं पेड़ हैं खंभे हैं तार है |

इसमें कुछ दो लोग हैं जिसने येलो कलर की शर्ट पहनी रखी है और लाल कलर कि या लाड कलर रेड कलर की स्किन पहन रखी है। कुछ घर मकान हैं। कुछ हरियाली हैं।